के निचे एक मूर्ति लगी हुई है जहा साइकिल खड़ा है और यहाँ एक औरत खड़ी है और एक लड़का खड़ा है।

बहार चेयर लगे हुवे है जहाँ कुछ लोग बैठे ह है और उनके ऑपोजिट एक सीढ़ी नजर आ रही है।

ये सलून है जिसके बाहर येलो कलर का वॉल है और यहाँ एक दरवाजा लगा है जो लोहे का है।

एल.ई.डी बल्ब जल रहा है और अंदर में कुछ सोफा और टेबल नजर आ--

इसपे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सैनिक साइकिल मार्ट लिखा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे बेंच रखे हुए है और बेंच के निचे कुछ मॅट है बेंच सफ़ेद अण्ड ब्राउन कलर का है और मैट ब्राउन कलर का है।

और सामने में एक विंडो है जहाँ से तेज़ रौशनी आ रही है।